इस इमेज में मुझे एक मॉल दिख रहा है जो ऊपर में छत है वो व्हाइट रंग का दिखाई दे रहा है और थोड़ा काला टाइप में दिख रहा है जो परछाईं है और बड़ा-बड़ा है जो जल रहा है जो--

काले रंग का दिखाई दे रहा एक शेर है जो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है जो काला-काला दाग है और मुँह दिख मुछ दिख रहा है जो व्हाइट --

छोटा सा मंदिर दिख रहा है जो गुलाबी रंग का है उसके ऊपर एक झंडा है जो टंगा हुआ है और--

छोटा सा मंदिर दिख रहा है जो गुलाबी रंग का है उसके ऊपर एक झंडा है जो टंगा हुआ है और--

छोटा सा मंदिर दिख रहा है जो गुलाबी रंग का है उसके ऊपर एक झंडा है जो टंगा हुआ है और--

एक आदमी है जो लड़के को देख रहा है एक ससने वाला झुला है जो पीले और आसमानी रंग का दिखाई दे रहा है एक बच्चा --

टैग दिखाई दे रहे और सेब है जो हरे लाल रंग के दिखाई दे रहे है नीचे भी केले रखे गए है जो--

पीले रंग के दिखाई दे रहे है और सेब है जो हरे लाल रंग के दिखाई दे रहे है निचे भी केले रखे गए है जो --

इस इमेज में मुझे एक बस स्टैंड दिख रहा है जो बहुत सारे बस है जो खड़े हुए है जो व्हाइट अब वॉल्वो और बड़े छोटे बस दिखाई दे रहे जो व्हाइट कलर के दिख रहे एक आसमानी रंग की--

इस इमेज मुझे एक बस स्टैंड दिख रहा है जो बहोत सारे बस है खड़े हुए है जो वाइट और भोर भू और बड़े छोटे बस दिखाई दे जो वाइट के दिख रहे है एक आसमानी रंग--

इस इमेज में मुझे भी स्कूल दिखाई दे रहा है जो पीले रंग का है और बॉर्डर है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है नीचे सीढी है जो रेड और व्हाइट में दिख--

इस इमेज में मुझे स्कूल दिखाई दे रहा है जो पीले रंग का है और बॉडर है जो रेड का दिखाई दे रहा है निचे सीढ़ी है जो रेड वाइट में दी--

जो व्हाइट रंग का दिखाई दे रहा है अलमारी है जिसमे बहोत से कपड़े है जो फोल्ड करके रखे गए जैसे व्हाइट मरून ब्लैक ब्लू --

पेड़ है जो लगे हुए है जो हरे-हरे दिखाई दे रहे एक छोटा-सा स्विमिंग पूल है।

लगाए हुए है एक बैग है जो लिया है लाल रंग का टी शर्ट पहना है एक लड़का भोत सारे लोग है जो बस के ऊपर बैठे है।

इस इमेज में मुझे बहोत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और जो व्हाइट कलर का बिल्डिंग है और जो फ्लॅग जैसा दिख रहा है वन फ्लोर टू फ्लोर थ्री फ्लोर

कुछ येल्लो ब्लैक पीच कलर के कपड़े पहने हुए है पीछे में टेबूल है जो दिख रहा है नीचे थोड़ा छोटा सा रोड है जो कच्चा है।

कुछ येल्लो ब्लैक पीच कलर के कपड़े पहने हुए है पीछे में टेबूल है जो दिख रहा है नीचे थोड़ा छोटा सा रोड है जो कच्चा है।

दिख रही है जो आगे पीछे हर जगह दिखाई दे रही है एक बड़ा सा ग्राउंड है जो ग्रीन ग्रीन घास उगे हुए है और जगह-जगह में नारियल के--

इस इमेज में मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है जो अलमारी है जो कपड़े टंगे हुए है कुछ टी शर्ट है जो टंगी हुई है व्हाइट अलमारी है।

इस इमेज में मुझे एक स्कूल दिखाई दे रहा है जो आगे लिखा हुआ है बैनर में जो व्हाईट और ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है शासकीय महाविद्यालय लिखा हुआ है।

इस में मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है जो नीचे मार्बल लगा हुआ है जो ब्लैक कलर का है कार्पेट है जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है और ऊपर में कुछ लाइटें जली हुई है।

पेड़ पौधे है जो दिखाई दे रहै है ऊपर पत्थर जो ब्राउन कलर का सूरज का रोशनी है जो पड़ रहा है जो हल्के पीले रंग का दि --

दिखाई दे रहा है और पानी है जो हल्का ग्रीन कलर का दिख रहा है और नीचे पानी गिर रहा है जो व्हाईट कलर का दिख रहा है झरना जैसा --

और गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है जो ग्रे कलर का दिखाई दे रहे ऊपर में पेड़-पौधे दिख--

इस इमेज में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है जो प्लेटफार्म है वो थोड़ा कच्चा है जो मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी का पहाड़ बना हुआ है दो चार पौधे है जो लगे--

इस इमेज में मुझे एक छोटी सी रोड दिखाई दे रही है जो एक कार है जो चल रहा है जो व्हाइट कलर का है साइड में बहोत सारी बाइक और स्कूटी रखी गई है एक बड़ा-सा बैनर लगा है जिसे--

इस इमेज में मुझे एक बैनर दिख रहा है जो घुंगराले बाल वाले दिख रहै है बॉक्सिंग है जो दिख रहै है जो थोड़े फेस से थोड़ा दांत दिख रहा है उस में लिखा हुआ है टाइगर --

लिखा हुआ है नीचे में बहुत सारे बैनर लगे हुए शटर ग्रे कलर का दि --

और एक सीढ़ी है जो दिख रहा है बहोत सारे सामान है जो लटके हुए है जो लैस के कुरकुरे के पैकेट रखे हुए है।